जिसमें कई सारे लड़के लोग घूम रहे हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है।

कुछ डिज़ाइन दिख रहा है शीशा दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

एक ऐ लड़का खड़ा दिख रहा है.

इस तस्वीर में स्वर्ग दिखाई दे रहा है।

जो मछली मंडी दिख रहा है।

कुर्सी दिखाई दे रहा है बोतल दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहे है।

पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में घर दिखाई दे रहे है।

जिसमें कई सारे कुर्सियां दिख रही है।

बोतल दिखाई दे रहा है गिलास दिखाई दे रहा है ए_सी दिखाई दे रहा है आदमी दिख रहे हैं।

जिसके बाहर कई गाड़ियां खड़ी दिख रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

हेलमेट दिखाई दे रहा है।

कई सारे घर दिखाई दे रहा है।

एस_बी_आई बैंक दिख रहा है।

इस तस्वीर में गहर दिखाई दे रहे हैं.

एक डिजाइन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक मॉल दिखाई दे रहे है.

जिसमें गहराई दिख रहा है.

ब्लू कलर कर कर दिख रहा है.

कई बोतल दिख रहे हैं।

घर के अंदर कई सारे सामान दिख रहे हैं।

कार्टून दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में रोड दिखाई दे रहा है.

दुकान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में रोड दिखाई दे रहा है।

टेस्टफार्मर दिखाई दे रहा है.

लोहा का रथ दिखाई दे रहा है.

एक पार्क दिखाई दे रहा है।

एक दिखाई दे रहा है.

जिसमें कई सारे लड़के और लड़कियां बैठी दिख रही है।

कई सारे फोन दिख रहे हैं।

पैप दिखाई दे रहा है।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

असमान दिखाई दे रहा है।

लड़के लोग दिखाई दे रहे हैं।

एस_बी_आई बैंक दिखाई दे रहा है।

हरा कलर का कारपेट बिछा हुआ हैे।

कुर्सिया दिखाई दे रहा है।

बैलून दिखाई दे रहा है।

सरक के किनारे नदियां दिखाई दे रही है।

आदमी दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है.

चप्पल दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर चित्र बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है।

सड़क के बगल दुकान दिख रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है।

कई शारे केक दिख रहे हैं।

आदमी दिखाई दे रहा है।

ए_सी दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

साइकिल दिखाई दे रहा है।

पोल दिखाई दे रहा है।

सोफा सेट दिख रहा है डेक्स दिखाई दे रहा है टीवी दिखाई दे रहा है ।

जिसमें लड़के चाय पी रहे हैं रुमाल दिख रहा है।

इस तस्वीर में मस्जिद दिखाई दे रहा है।

कई सारे कुर्सियां दिख रही हैं।

रंग-बिरंगी बैलूने दिख रही है।

इस तस्वीर में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे--

लाइट बढ़ रहा है गमला दिखाई दे रहा है दीवार पर चित्र बना हुआ दिख रहा है।

पोल दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।